ऊपर में एक मचान भी बनाया हुआ हैं और बाए तरफ मे एक लंबे से फैक्टरी जैसा टिन का घर दिखाई दे रहा--